सड़क बहोत साफ सुथरी बड़ी बड़ी सड़कें हैं।

टेबल टेनिस रखा हुआ है।

इनमें बहुत साफ सुथरा पानी है।

घर के ऊपर रेलिंग है घर के सामने बाउंड्री है।